भाई लोग बहन लोग देखिये यहाँ एक उदयलक्ष्मी आय.ए.एस. इसका एक पिक्चर था ने--

यहा हम देख सकते है यहा तो ये कोई बस स्टैंड नहीं है हॉस्पिटल है हम देखते है।

यहाँ हमे बहुत पैसे कमाने वाले है ही हॉस्पिटल वाले ही सफेद चार्ग करते है यम_आर ओ सी_आर वो जैसे अँड हिस्सा पैसे लेते है सबमे हुशार है डॉक्टर

काना खाते है पानी पीते है ए फिश अच्छा होता है क्युकी विटामिन ए बी सी डी आता है इसे फिश खाने वाले का फिश भरा है।

चुन्नु लोग भी लोग देखिये यहा पर पास भी एक बैठा है और ये वो भी अच्छा करता है इनसे अच्छा करता है।

भाई लोग चिट्ठी लोग हम देख सकते है की यहा एक आदमी है उसने मास्क पहना है हम देखे तो ये समुद्र के पास आ गया है और यहा एक --

और यहा हम देख सकते है की यह सद्गुरु जेन्टस पार्लर है ये पार्लर कटिंग करने वाले करते है।